और ये यहां बच्चा आते हैं पढ़ पढ़ाई करते हैं यहां अच्छे अच्छे टीचर भी हैं।

यहां पे बाहर में कुछ लिखा हुआ है।

यहां पे रेड कलर की बिल्डिंग है और बिल्डिंग के साइड साइड में पेड़ पौधे भी है।

और ये आदमी जो है वो वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की जी--

और भगवान का मुंह चमक रहा है।

लोगों के लिए यहां वेजीटेरियन खाना में बनाए जाते हैं जैसे की साग सब्जी इत्यादि।

रूम में बिजली चले जाए तो बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ही ना --

ये ब्राउन कलर की गेट है गेट के ऊपर में व्हाइट कलर का--

हेलो गायज़ तो यहां पर आप लोग देख सकते है ये एक बहोत बड़ा ग्राउंड है और इस ग्राउंड में बच्चे आते है खेलते कूदते है।